लेडिज ने पिंक येल्लो कलर की साड़ी पहनी हुई है और आसमान दिख रहा है और पेड़ दिख रहे है और ऑरेंज कलर दिख रहा है नीचे फर्श पर--

और उस पर एक मशीन पे कुछ रखा हुआ है जो की ऑरेज कलर की मशीन है और एक बोर्ड लगा है जिसमें एम आर पी लिखा हुआ है।

जो येल्लो कलर की टी शर्ट पिंक कलर टी शॉर्ट व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने एक नीचे कारपेट है पिंक कलर का है ब्लैक कलर की लेग्गिंग पहनी--

--और कुछ लोग है एक आ स्काई ब्लू कलर में साड़ी पहनी हुए है एक लड़का कुरता और दुपट्टा डाले हुए दिख रहा है और एक लेडीज साडी पहने--

वहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक कैमरा भी लगा हुआ है और एक लकड़ी की चेयर भी डली हुई है और व्हाइट कलर का कवर बिछा हुआ है टेबल पर तो वहाँ पर कैंची भी रखी हुई है और बुके भी--

एक लड़का है जो उनके पैरों पर मसाज दे रहा है शायद वो आसमानी कलर की शर्ट पहने हुए है उनके कपड़े डले हुए है।

इस पिक्चर में एक दुल्हन दिख रही है इक दूल्हा दिख रहा है पीछे की मेंट्रटी जल रही है स्टेज है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है छोटा सा जो सिर्फ एक टोपी लगाये हुए--